और अलमारी है अलमारी में बुक वगैरह सामान रखा हुआ है।

सामान पड़ा हुआ है ईंट का गत्ता वगैरह ईंट का चट्टा लगा हुआ है और यहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे--

और बहुत सारे लोग दिख रहे हैं बीच में ग्राउंड में भी बहुत सारे लोग हैं छत पर भी बहुत सारे --

गली में और यह बहुत बड़ा है यहां पे बैंक है।

और ऊपर ए_सी वगैरह डिजाइन किया गया है।

और साइड में ग्रीन घास है रोड के किनारे--

डब्बे टिफिन वगैरह रखे गए हैं खिड़की है।

और ये बहुत अच्छा है चढ़ने के लिए सीढ़ियां--

ये रेलवे लाइन है रेलवे की पट्टी है दोनों तरफ से आसमानों--

बोर्ड लगा हुआ है झंडा लगा हुआ है और हरे हरे --

और अंदर बोट वगैरह भी दिख रहा दिख रहा है।

और बहुत सारे फल हैं स्टॉल पे ये फल स्टॉल है।

ये काफी सारा डेकोरेशन किया गया है फील्ड टाइप का है यहां पे --

गमला में फूल लगाया गया है और फील्ड में --

और बीच में रोड है लोग जा आ रहे हैं औ --

वाइट और ब्लैक में येलो कलर में लोहा लगाया गया है।

बच्चे बहुत सारे खेल रहे हैं निकल स्कूल से निकलने के बाद पीला ड्रेस और नीला ड्रेस में है बच्चे सब --

हम्म लाइट वगैरह भी हैं औरी --

जो इस जंगल में ज ग्य घूम रहे है।

अ कई ठो तीन चार ठो दिख रहे है जंगली जानवर और यहां पेड़ पौधे भी हैं और बहोत सा--

ये हॉस्टल है हॉस्टल में ऊपर नीचे करके बेड लगा हुआ है।

कॉर्नर में एक भी अलमारी स्पेस नहीं है बहुत सारे समान है।

रियल सुपर मार्केट का बोर्ड लगा हुआ है और --

और यहां पे कई सारे लोग हैं कई दुकानें भी बंद है गाड़ियां भी खड़ी है बाइक --

ये हॉल है हॉल में अंधेरा है एक लाइट जल रही है।

बाकी लोग चेयर पे बैठे हुए हैं इस रूम में।